यहां सामने एक ग्राउंड बना हुआ है।

हवेली कि चारों तरफ से बनी हुई है।

यहां बड़े बड़े पेड़ लगे हुए हैं।

यह एक जन सेवा केंद्र है यह ग्रामीण स्तर है।